हरियाली हो रही है और आजु-बाजु काफी ज्यादा --

यह तस्वीर एक डैम का नजर आ रही है जोकि मैं रोड से होते हुए नजर आ रहा काफी ज्यादा मात्रा में डैम इस तरफ पे पानी भरा हुआ है और इस रोड पे--

इस ईमारत में काफी अच्छी तरह की डिजाइनिंग - वगेरा नहीं और इज इज ईमारत के बाजु जरा एक टावर लगा हुआ है जो की कंपनी का है।

नजर आ रहे हैं और जिन्ह पहाड़ों पे काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं जिसे पहाड़ घना दिख रहा है।

यह तस्वीर हमें कॉलेज की नजर आ रही है और यह तस्वीर में हमें एक दिवार नज़र आ रही है जो की काफी पुरानी है यह तस्वीर एक मैं रोड की है।

यह तस्वीर किसी शोरूम की नजर आ रही है जो की हौंडा कंपनी का शोरूम है इस शोरूम के अंदर दो दरवाजे नजर आ रहा है जिसमें काफी ज्यादा--